यह नेपाल का मेडी सिटी है वहाँ पे एक स्टेचू लगा हुआ है जिसके नीचे बहुत ही अच्छे फ्लावर पीस लगे हुए हैं और फोटो बराबर फोटो - वोटो भी लगा हुआ है जो की बहुत अच्छा दिख रहे हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है। इसमें बहोत सारे चेस लगे हुए है । जो की इसका अ किया गया है। उसके आगे एकं एलईडी लगाया गया है। ऊपर में डेकोरेशन जो की बहोत सारे बल्ब लगाये गए है। अच्छा लग रहा है।